ऊपर से वीडियो करके भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में वाइट कलर का कलर लगाके रखा है।

ऊपर में इंग्लिश से कुछ लिखा हुआ है।

बाइक भी पार्किंग करके है एक इंसान बैठा हुआ है।

ग्राउंड का बीच में दो तीन इंसान खड़ा होके है फुटबॉल पोस्ट भी दो ठो है।

ये पिक्चर में बड़ा सा एक भगवान का मूर्ति है।

ये पिक्चर में टीना से बना के एक बिल्डिंग है।

ब्लैक कलर का फैन भी टंगा के है।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

बहुत सारा इंसान लोग बैठा हुआ है बहुत सारा कंप्यूटर भी है।

यह पिक्चर में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा के है रेड कलर का भी बिछा के है।

बादल भी दिखाई दे रहा है।

वायर पोल्स भी लगा के रखा है।

इस पिक्चर में बहुत सारा टेबल भी है।

हरा भरा पेड़ भी लगा के रखा हुआ है।

जिनमें एक पेड़ भी लगाके है। बहुत सारा कचरा फेंक के है।

छोटा छोटा पत्थर भी है बहोत सारा ग्रास भी है।

आगे में व्हाइट कलर का एक कार पार्किंग करके है एक घर भी है।

पीछे में दो इंसान खड़ा होके हैं।

दरवाजा पे एक पर्दा भी टंगा के है।

इसमें दो इंसान खड़ा होके है रेड कलर का एक चेयर है।

पानी का अंदर में छोटा छोटा पत्थर भी है।

रस्सी पे पेपर भी बनाके है।

ये पिक्चर में बड़ा एक घड़ी है।

वायर भी दिखाई दे रहा है एक इंसान बैठा हुआ है।